ये एक बेकरी शॉप का ग्लास डिस्प्ले है।

जो रोड है उस पे हमें दो स्ट्रेट व्हाइट लाइंस दिख रही हैं।

राइट साइड में एक येलो और ब्लैक कलर में डिवाइडर भी है।

ये फोटो में हमें बहोत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स दिख रहे हैं।

बच्चों ने जींस व्हाइट पैंट्स और ब्लू शर्ट पहनी--

जिनका मुंह ऊपर से मोटा बीच में से कर्व्ड और नीचे से मोटा है।

जहां पे हमे फ्लोर वाइट कलर के टाइल्स की दिख रही है।

जहां से हमें एक विंड टरबाइन दिख रहा है और बीच में एक आदमी चलता हुआ दिख रहा है।

में पीछे खुला नीला आसमान भी दिख रहा है।

जहां पे कुछ और सीट्स हैं और लेफ्ट साइड में हमें तीन रेल की पटरी भी दिख रही है।

जिसकी वाल्स क्रीम कलर की है और जिसमें एक ऑरेंज कलर का मंडप लगा हुआ है।

यहाँ पर एक गिलास टेबल हैं जिस पे दो सीट्स रखी हुई हैं।

जो वाइट ब्लू और ग्रे कलर की है।

जिसके आगे हमें कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही हैं।

इसके पीछे हमें एक बड़ी सी वॉटर टैंक भी दिख रही है और एक रास्ता भी दिख रहा है।

जहां पे यहां शायद एक छत डल रही है।

जहां पे हमें कुछ टेबल्स और चेयर्स दिख रहें हैं।

ऊपर लटकते हुए हमें ब्लैक कलर के फैंस दिख रहे हैं।

ये एक रूलर सेटिंग है जहां पे हमें एक छोटा सा पार्क दिखाया हुआ है।

और बीच में एक स्लाइड भी है येलो कलर की और एक इंसान साइकल से भी जा रहा है।

बिल्डिंग के आसपास पेड़ हैं जो हरे भरे हैं।

ये एक दवा की दुकान है जिसके आगे हमे एक ब्लैक और यलो कलर का गेट दिख रहा है।

और उसके राइट साइड एक एंट्रेंस डोर भी है।

जहां पे हमें बीच में हवन कुंड दिख रहा है।

मंदिर के अंदर जो टाइल्स है वो वाइट कलर के मार्बल के बने हुए है।

मन्दिर के बाहर एक लाल कलर का डब्बा है।

जहां पे टेबल पे बहुत सारे ग्लासेस प्लेट्स और मैनू रखे दिख सकते हैं।

और बैकग्राउंड में एक पेड़ भी है जो काफी हरा भरा है।

ये एक ग्राउंड है जो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है।